कोई मास्क बंधे हुए बैठे हुए हैं और कुछ लेडिस बैठी हुई है जिन्होंने मास्क पहना हुआ है और सामने एक --

एक बोर्ड भी लगाया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर एक आदमी हेलमेट लगाए हुए खड़ा है और एक कांच भी लेकर खड़ा हुआ है।

एक ट्रक भी नजर आ रहा है और सामने कुछ और भी नजर आ रहा है बीकानेर मार्केटिंग भी नजर आ रहा है वह सामने बहुत सारा सामान नजर आ रहा है।

एक डिब्बे के अंदर ऊपर लिखा हुआ है कि गोयथा मशीन निज्रो और एक बंदर भी नजर आ रहा है सामने बंदर के नीचे पास में डब्बा भी नजर आ रहा --

एक शहीद मेजर जेम्स तामसेन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नजर आ रहा है बीकानेर --

यहां एक होटल नजर आ रही है जो की बहोत बड़ी होटल है इसके अंदर खाना नजर आ रहा है और --

हमे एक बोटल भी नज़र आ रही है और एक लोटा भी नज़र आ रहा है सामने --

यहां पे लाइब्रेरी है जिसके अंदर बच्चे एयरफोन लगाके पढ़ाई कर रहे हैं फोन देख रही है किताबें देख रही हैं।

हमें यहां बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं वायरिंग भी नजर आ रही है और ईयर फोन भी नजर आ रही है धूप भी नजर आ रही हैं कचरा भी नजर आ रहा है।

मुझे यहां एक बाइक स्कूटी नजर आ रही है जोकि पेड़ पौधे के साथ में नजर आ रही है और--

मुसलमानों की लड़कियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं आपको बता--

बहुत सारा कुछ पंजाब का कोई जगह जुगह लग रहा है मुझे तो --

और एक अलमारी भी दिखाई दे रही दरवाजा भी दिखाई दे रहा है एक ए_सी भी दिखाई दे रही है सामने कुछ बैठने की व्यवस्था भी दिखाई दे रही हैं।

हमें एक सूर्य भी दिखाई दे रहा है और एक धूप भी दिखाई दे रही है और--